एक ए.टी.एम. है ए.टी.एम. का गेट शीशा का है उसपे स्टेट बैंक लिखा हुआ है बोर्डे --

बहुत बड़ा खुला मैदान है और मैदान में बिच में पनिया है वहाँ पे बहुत सारे हरा भरा पेड़े हैं |

झंडा लगा हुआ है आसमान में अच्छा दिख रहा है।

वहां पे पंडी जी शादियां करा रहे है वहां पे लेडिजे बैठी हुई है।

खिड़कियाँ है गेट है लगा हुआ है।

एक फले का दुकान है वह बहुत सुन्दर --

एक रूम में एक बेड लगा हुआ है उसमे दो तकिया दो कम्बले --

बड़ा सा फील्ड है उस फील्ड में बड़ा एक गाड़ी लगा हुआ है उसके अगल-बगल में घरे --

गंगा किनारे बहुत सारे बालुए हैं | पनिया बहुत सुन्दर दिख रहे हैं वहाँ चारो तरफ बहुत --

पेट्रोल पंप पे बहुत भीड़े लगी हुई है वहाँ पे लाइन में लग के तेले के लिए ठरे है लोग सुबह सारे गाड़ियाँ लगा हुआ है वहाँ --

में टी.वी. लगा हुआ है।

बहुत सुन्दर आसमाने दिख रहे है वहाँ पे बड़ा पेड़े है वहाँ पे घरे पीला कलर से रंगा हुआ है |

इधर आसमान दिख रहे हैं बादले भी दिख रहे हैं वहाँ पे लाइने का पुल है वहाँ पे घर भी है।